हिरण को यह अपनी भूख मिटाने कि क्षमता है जिसे प्रकार की यह लोगो अभी खाना की तंदरुस्ती होती है जैसे इसी प्रकार होती है इससे जो अपने को भी जंगल में

इस शादी की होने के कारण बहुत ही सुंन्दर इस प्रकार देखने की भी नज़ारा बहुत ही है।

तेल वेल साबुन दाल चावल जैसे ले सकते हो ।

हलो दोस्तों इसमें यह नृत्य करते जैसे माँ काली का--

दोस्तों जिसे देखने के लिए बहुत ही लोग प्रस्तुत हुए है।

सब सुविधा है जैसे गार्डन --